यह सामने एक नदी जाती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पर ब्रिज बना हुआ है जो ग्रीन कलर का है यहाँ पर बहोत सारे पेड़-पोधे लगे हुए है।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

यहाँ पर सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है जो नीले कलर से है आसमान दिखाई दे रहा है जो नीले कलर का है यहाँ पर यह देखने में जिनका सीन लग रहा हैं।

यहां पर कुछ आदमी दिखाई दे रहे है ये देखने में रात का सिन लग रहा है बाजु में एक पेड़ दिखाई दे रहा है जोकि तीन खड़ का है यहां पे बहुत सारी सर्किट लगी हुई है और बहुत सारी लाइट लगी हु--